ये एक रोड है यहाँ पर बहुत-सी गाड़ी चल रही है अ-अ जिसमें बैटरी वाली गाड़ी भी है और दो बाइके भी है साइकिल भी है और सामने कई दुकान भी लगी हुई हैं।

एक-दो बाइकें भी खड़ी हुई है एक कत्थई कलर का लोहे का गेट भी लगा हुआ है।

के नीचे और मंदिर के ऊ ऊपर एक झंडा भी लगा हुआ है।